यह एक खाली कमरा है जहां--

खुले हुए हैं और उसने पीली रंग--

है जिसके लिए बहोत सारी सफेद कुर्सियां--

कुछ लोग मीटिंग खड़े होकर सुन--

यह एक काम करने वाली बड़ीसी दुकान--

यह एक शादी वाली जगह है यह जगह देखने--

खरीदने का शोरूम है जहां पर--

सब कुछ मिल जाता है आप--

एक आदमी पत्थर को छू रहा हैं।

का कपड़ा पहेना हुआ है।

यहां पर चार पांच आदमी भी खड़े --

ये तो है बैंक का--

बच्चों को काम सिखाया--